निचे बहोत सरे टूटे-फूटे पथ्थर डले है जिन पे बहोत सी घास और पेड़-पौधे लगे हुए है।

सामने एक ट्रोच है लाल चेयर है फर्श है और मिरर --

यह ईमारत दय दो मंजिला है इसमे दो रोड जा रही है एक लेफ्ट जा रही है एक राइट जा रही है।

सामने तट है पानी का कलर नीला है आसमान का कलर नीला सामने कुछ पेड़- पौधे दिख रहे है।

--पीछे लाइट से क्लॉक ती सीलिंग है अस्थम है बोर्ड्स रेड बोर्ड्स है जैकेट्स है ट्राउज़र्स है।

जिसमे एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल रखा हुआ है जिसपे बहोत सी वस्तुऐ है।

और इसमें इनके रेट लिस्ट लिखी है जोकि ग्रीन कलर की है पीछे बहुत -सी वस्तुयें और है जोकि अलग-अलग --

एक स्टीच है जिसमे बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए है।

जिसमें एक झरना बह रहा है झरने के निचे बहुत सारा पानी भरा है ऊपर चट्टानें है चट्टानों मे पेड़ लगे हुए है।

और चारों तरफ घास है जोकि छोटी-छोटी और हरी-भरी है और उनके आजु-बाजु --

जिसमे नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत लिखा है दोनों तरफ दो मुर्तियां है।

यह इमेज एक ई. सी. यु. के रूम की है जिसमे वाइट कलर --